यहा कुछ बच्चे हैंगे जो बैठे हुए हैंगे और यहा पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए है जो बच्चे पोस्टर को देख रहे हैंगे और यहा एक लड़की एक चेयर पर बैठी हुई बच्चों को होमवर्क दे रही हैगि यहा एक बच्चे एक दूसरे को देख रहे है पढ़ रहे हैंगे।

यहां कुछ आदमी हंगे जो की होली से रंगे हुए हेंगे और यहां पर पीछे घर बना हुआ हैगा और यहां पर नारियल के पेड़ लगे हुए है लाइट के खंबे लगे हुए हेंगे।